एक लोग नीचे की तरफ झुके हुए हैं।

ये एक सुनसान रास्ते का फोटो है।

नौनिस में घर है जिसके नीचे के साथ इन्होंने शॉप करति है ऊपर के साइड उनका में बि शायद घर --

आपके साइड में एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है जिसमें विंडो वगैरा लगे हुए हैं नीचे की साइड बेम्बू की दुकान है।

ये एक कैफे की फोटो लग रही है।

आगे के साइड कुछ स्पीकर रखे हुए हैं जो कि शायद --

यह एक इवेंट की फोटो है।

ये शुभ नॉर्मल सुबह की फोटो है जिसमें सनराइज हो रहा है।

ये एक पार्क की फोटो है ये इसमें एक एलीफेंट की अ स्टेचू बनी हुई है।

सामने चेक शर्ट में एक लड़का बैठा हुआ है एक मुसलमान कुछ कपड़े खरीद रहा है।

इस फोटो से ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एक कंस्ट्रक्शन एरिया है।

ये फोटो दोपहर में ली गई हुई है।

यह स्कूल पूरा बेम्बू का बना हुआ है।

शॉप पूरा खाली पड़ा हुआ है।

पीछे के साइड एक पहाड़ भी नजर आ रहा है।

और इस कॉलेज के पीछे पीछे एक अ बड़ी सी पहाड़ है।

हालांकि इस दुकान में कोई नहीं है।

इस दुकान को बंबू के सहारे बंबू में लगाया गया हुआ है।

अलग अलग डेस्कटॉप नजर आ रहे हैं और पीछे के साइड एक टी_वी लगी हुई है।

फोटो में एक कॉलेज दिखाई पड़ रहा है कॉलेज का नाम एसएम कॉलेज है।

फोटो में दो अलग अलग बसेज हैं एक रेड कलर की बस है एक ब्लू कलर की बस है।

यह एक ऑफिशियल मीटिंग की फोटो है।

ये एक कंप्यूटर की शॉप है इससे ऐसा पता चल रहा है कि इससे यहां कंप्यूटर सिखाया जाता है नॉर्मली खाली है।

बहोत सारे बॉक्स है ।

इसमें कुछ एक छोटा सा ग्लास रखा हुआ है कुछ एक रेड कलर का कपड़ा रखा हुआ है।

इस फोटो में एक आदमी फोटो ले रहा सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है उसका फेस ब्लर कर दिया गया है।